साथी कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं और कुछ पत्थर का बड़ा सा चट्टान नजर आ रहा है।

जिसके ऊपर कुछ लिखा है।

साथ ही में दूसरा व्यक्ति जो है वो इसकी कुछ चूल या बाल बना रहा है।

यहां पर कोई एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

साथ ही साथ ऊपर की ओर कुछ रॉड दिख रही है छोटी छोटी।

जहां पर कुछ ऊपरी भाग से पानी गिरती हुई नजर आ रही है।

यहां हमें एक रोड नजर आ रहा है।

फिर सामने की ओर कुछ बजारे जैसे दुकान नजर आ रही हैं।

यह कुछ होटल के अंदर से लिया गया तस्वीर दिख रहा है।

और साथ ही इसके उपर जो चादर लगा है वहां बहोत सारे लाइटिंग नज़र आ रहे हैं।

तो अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत सारे गेट बनाए गए है।

तीन लोग बैठने वाला सोफा और सिंगल सोफा नजर आ रहा है।

दिखने में यह कोई एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान नजर आ रहा है।

कुछ होल्डर्स नजर आ रहे हैं।

यहां आगे की ओर हमें बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

जिसके ऊपरी भाग में कुछ कपड़ों को सुखाया गया दिख रहा है।

यह बिल्डिंग सफेद कलर का नजर आ रहा है।

और कुछ मजदूर काम कर रहे हैं।

जो कि कुछ कटे हुए भी दिख रहे हैं।

और एक थम्स अप का बॉटल दिख रहा है।

एक व्यक्ति इस रोड को क्रॉस कर रहा है।

दो बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

जैसे कि कुछ चूड़ियां नजर आ रही है।

रोड के पास में किनारे में कुछ बड़े बड़े ट्रक्स नजर आ रहे हैं।

तो कुछ पेड़ पौधे भी नजर आ रही है।

यह किसी एक दुकान की तरह लग रहा है।

साथ ही ऊपर एक काली कलर की प्लास्टिक लगा रखी है।

यहां पर हमें एक कच्चा रस्ता देखने को मिल रहा है जिसके साइड में खेत है।

जिसमें कुछ लड़कों का कपड़ा जैसा कुछ बाहर से दिखाया गया है।

पानी का बोतल नजर आ रहा है।

कुछ धुएं आने की दिखाई दे रही है।

ये कोई कराटे खेलने वाले लोग हो सकते हैं।